यहँ सर जी पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को और सब बच्चे पढ़ रहे है।

इतना अच्छा परवाइड इनका किया जाता है अंबिकापुर जिले में तो एक नंबर इनका काम भी चल रहा है अंबिकापुर--

ये बिल्डिंग है जिसमें आदमी लोग बैठे हैं और आप देख सकते हैं यहां पर कुछ तैयारी हो रहा--